उन्हे एक मंदिर है | सीरी है अंदर कुछ लोग अ ब पूजा कर रहे हैं पेड़- पौधे हैं।

सामने एक महारानी जंडर लिखा हुआ है।

सामने कुछ लोग हैं बाइक है ट्रक है घर है एक ठेला वाला है।